इसमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

कुछ एल_इ_डी टी_वी भी लगी हुई है ऊपर लाइटें भी जलती हुई दिख रही हैं।

दीवार पर कुछ पेंटिंग और फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है।